दो मकान हैं और सामने पहाड़ियों में और मकान बनाए गए हैं उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं यह फोटो दिन के समय की गई है।

इसमें बहोत सारे लोग काम कर रहे मशीनों के ऊपर और इसमें लाइट भी जलाई गई है और इसमें--

यह एक सब्जियों की दुकान है। इसमें क्रेट और पेटी में सब्जियां बेचने के लिए रखी गई है और इसमें--

खाने पीने के समान की ली गई है इसमें मिठाइयां--

लपेटी हुई हैं और उसके ऊपर बाहर काट के गिरे हुए हैं और सामने--

छल के ऊपर असमान रखा गया है और इसमें दीवार में एक टी_वी लगाया गया है और यह फोटो दिन के समय लि गई है।

सब्जियां रखी गई है और क्रेटों में भी सब्जियां रखी हुई है और दिन के इस में फोटो सब्जियों की ली गई है।

साइड में लगी हैं और बहुत अच्छी धूप लगी हुई हैं आसमान बिलकुल साफ हैं यह फोटो दिन में हैं और इस--

यह फोटो एक कमरे के अंदर ले गई है इसमें सोफा लगाया गया है जो की बहुत ही--

गंड्डा भी रखा गया है और उसके साथ एक पानी की बोतलें और काउंटर के अंदर बहुत सारा सामान रखा गया है।

दी गई हैं और यहां घूमने फिरने आयी हैं।

दो रंग की टाइलें लगाई गई है और एक इसमें काउंटर बनाया गया है काउंटर के ऊपर लैपटॉप लगाए रखे गए है और एक व्यक्ति काउंटर के साथ खड़ा है और इसमें--

इसमें अंदर लाइटें जलाई गई है और कुर्सियां लगाई गई है और--

कमरे के अंधेरे और हल्की रोशनी में ली गई है।